लाल और सफ़ेद कलर से पुती है जिस पर उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मैदान के बीच में से एक कच्चा- कच्ची सड़क दिखाई दे रही है और सड़क के दोनों तरफ बहोत (बहुत) सारी--

इसमें एक बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में मेला लगा हुआ दिख रहा है। ग्रीन कलर का कालीन बिछा है फ़र्श पे बहोत सारी --

घर में बाहर की तरफ लम्बी लम्बी अ लाईट की ज़ालर जलती हुई दिख रही है। कुछ बल्ब लगे हुए हैं।

पेड़ लगे हुए हैं। भवन के सामने एक कच्चा मैदान दिख रहा है।

इसमे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी अल्मारिया बनी हुई है किराने का समान रखा है उसमें।

नहाने की साबुन रखी हुई हैं। होर्लिक्स के डिब्बे रखे हुए हैं।

मैदान के बीच में से सीमेंट के टाइल्स लगे हैं। टाइल्स के दोनों तरफ बहोत सारे गमलों में पेड़ लगे हुए हैं।

में लाइ लाइन से बने हुए क्लास दिखाई दे रहे हैं। क्लासों की बाहरी दीवार पर बोर्ड लगे हैं। बरामदे में कुर्सिया रखी हैं।

इसमें लाइन से बनी हुई कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं। एक दुकान पर बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर शोभा ग्राफ़िक्स --

इसमें एक बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर की तरफ तिकोनी --

डिजाइन बनी हुई है और ये लाल कलर से पोती है और सबसे ऊपर क्राइस्ट का एक बड़ा अम बड़ा -सा चिन्ह बना हुआ --

इसमें एक बहुत बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है।

क्राइस्ट का चिन्ह बना हुआ है और चर्च --

दिखाई दे रहे हैं। कुछ बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। फल का ठेला लगा हुआ --

दिखाई दे रहा है जिस पर केले रखे दिख रहे हैं। फल के ढेले पर एक दुकानदार खड़ा है।

इसमें मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर एक बहोत बड़ी सी बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बस पर बांधिपुर टाइगर रिज़र्व लिखा हुआ है।

दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं। कुछ छोटे-छोटे पोधे लगे हुए दिख रहे हैं।

बहोत बड़ा सा महल बना दिखाई दे रहा है जो कि बहोत पुराना दिख रहा है।

अ रंग-बिरंगे दुपट्टे लगे हुए हैं। बहोत सारे रंग-बरंगे गुब्बारे लगे हैं। टेंट लगा हुआ है मैदान में --

जिम में औं ट्रेडमिल की मशीने रखीं हुईं दिखाई दे रहीं हैं। तिन साइक्लिंग की मशीन रखी हुई दिख रही हैं।